देखिए यह कितना बड़ा मतलब मंदिर जैसे लग रहा है कितना अच्छा है देख सकते है कितना सुंदर लग रहा है देखने मे ये इधर दिखता है।

ढेर सारा देखिये छोटे छोटे दुकान सब है यहाँ पर आदमी सब भी है देख सकते है कितना अच्छा लगता है देखने में। ये देखिये मन्दिर भी कितना अच्छा है

और यहाँ देखिये बिल्डिंग है कितना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा और रोड पे देखिये टैम्पू सब लगा हुआ है और सिटी भी लगा हुआ है देख सकते है। कितना बड़िया लग रहा देखने में।

यहाँ से हम पूरा बीच में घर है साइड साइड से देखिए गा सब तर दिखाई देता है कितना अच्छा लग रहा देखने में बहुत अच्छा बड़िया है।

और उधर देख सकते हैं बहोत बांस तांश है ढेर सारा और आयर है पे से रास्ता आदमी इधर आ रही है एक महिला --

फूल भी लगा हुआ है एक देखिये उ फूल भी कितना सूंदर लग रहा हैपता नहीं कौन सा फूल है देख सकते है कितना --